यहाँ पर हमें एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है | सामने यहाँ पर हमें पुल भी बना हुआ दिखाई दे रहा है |

फ्रिज दिखाई दे रहा है एक अम्म वॉशिंग मशीन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही और ऊपर लाइट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही।

यहाँ पर हमें एक सड़क दिख रही है जहाँ पर एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है टांगे रखे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।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

यहाँ पर हमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और जिसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे टाइल्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें सामने एक भालू दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का और एक पत्थर रखा हुआ दिखाई दे रहा है हरी-हरी पत्तियां हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।

कार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सामने हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा --

सामने यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं एक नाव दिखाई दे र --

और बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं आस-पास | दिवार दिखाई दे रही है येलो कलर की ऊपर छत भी हमें दिखाई दे रही है वाइट कलर की |

यहाँ पर हमें एक बड़ा सा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है और जहाँ पर हरे-हरे घास भी हमें दिखाई दे रही है।

और यहां पर बड़े-बड़े पेड़ भी हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं सामने हमें यहां पर घर उन भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर आसमान भी हमें दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक बड़ा-सा गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमे जाली भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें बड़ा सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर हरे-हरे घास दिखाई दे रहे हैं पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बरनी-उरनी यहाँ पर हमें रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें सड़क पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे खड़े हुए और कैप लगी हुई दिखाई दे रहे है सामने।

और यहाँ पर हमें गेट भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की दिवाले भी हमें दिखाई दे रही हैं और ऊपर हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की वाइट कलर की।

पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है | नीचे सड़क पर लोगे दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर हमें बड़ा सा कांच का बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है राइट साइड यहाँ पर दीवारें भी हमें दिखाई दे रही है।

उसके अंदर यहां पर कुछ अ अ मूर्तियां रखी हुई दिखाई दे रहीं है एक तस्वीर भी हमे यहां पर रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

जो की डांस करती हुए दिखाई दे रही है हमें गमले रखे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें सामने एक शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर व्यक्ति उनका दिखाई दे रहे हमें खड़े हुए।

यहाँ पर हमें लोहे के बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं जो कि बॉक्सेस में बने हुए दिखाई दे रहे हैं पाइप भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं |